अंदर बहोत अच्छी सजावट दिख रही है औऱ कटिंग वाले पेड़ दिख रहे हैं।

ये एक डांस क्लास चल रही है।